वहाँ पे पेटी दिखाई दे रहे हैं लोखन के रेलिंग दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे एक लोखंडी राह दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है ।

इस चित्र गेट दिखाई दे रहा है गेट हार फूलों से सजाया हुआ दिखाई दे रहा है ।

इस चित्र में टेबल दिखाई दे रहा है टेबल पर एक कलाकृति अ की मूर्ति दिखाई दे रही है।

चित्र वर्धमान आयुर्वेदिक संस्थान प-अ-उम-पालापुरी नालन्दा का है वहां पे गेट पे लिखा है।

अ वह साइड में दीवार है दीवार पर नो स्मोकिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।